और यह फोटो एक टेंपो के शोरूम में ली गई है।

यह फोटो एक कैफे की है।

इस फोटो में गेट पर काफी सारे रंग-बिरंगे बैलून लगे हुए हैं।

और ऊपर की साइड मरकरी से डेकोरेट किया गया है।

इसमें काफी सारी गाड़ियां एक टेंपो --

यह ट्रेन बच्चों की सवारी का है।

चारा ग्रीन कलर है और गाय काली कलर की है।

जहां पर काफी सारी एक्सरसाइज करने की--

डाइस से बना हुआ है और--

गुरगुरे जैसे काफी सारी सामान एक अलमीरा में सजाकर रखी हुई है।

ऊपर रिवॉर्ड दिया जा रहा है।

इसके पीछे की दीवार वाइट --

काफी शानदार टेबल भी है।

जिसका नाम प्रगति कोचिंग सेंटर है।

जिसका नाम देबी फूल भंडार है।

फोटो एक किसान की--

उन सभी व्यक्तियों ने ग्रीन कलर का कपड़ा पहना हुआ है।

यह फोटो भी एक--

जिसमें पांच बच्चे स्टेज के ऊपर हैं।

फोटो में गरमागरम जलेबी--

फोटो में काफी सारे व्यक्ति--

फोटो किसी फील्ड में लिया गया है।

यह फोटो एक नदी की जगह की ली गई है जिसके चारों तरफ काफी हरियाली है।

और उस व्यक्ति ने काले कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

इस फोटो में एक गैस सिलेंडर भी दिख रहा है।

यह फोटो में एक हिरन है।

इस हिरन के अगल-बगल कुछ हरे भरे घास भी उगे हुए हैं।

और पीछे की साइड एक दीवार भी नजर आ रहा है।

और इसमें दो व्यक्ति हैं।

पीछे की साइड रोड भी है।

और एक टागन पे काफी सारे लेडीज़ लोग के कपड़े सुख रहे हैं।

यह फोटो स्कूल में लिया गया है।

जहां पर काफी सारी पोमीग्रेनेट्स बनानास ग्रेप्स --

पीछे की साइड एक बड़ा सा मार्केट भी नजर आ रहा है।

एक व्यक्ति सामान ले रहा है।

इस फोटो में एक एटीएम नजर आ रहा है।

दो व्यक्ति अंदर की तरफ और दो बाहर की तरफ एक व्यक्ति फोन पे बात कर रहा है और एक के हाथ में कुछ है।

यह फोटो एक जू में लिया गया है।

नीचे की साइड थोड़ी मिट्टी है।

इत्यादि काफी सस्ते प्राइस पर मिल रहे हैंजैसे कि वन सिक्सटी टू --

जहां पर एक पीछे की साइड एक व्यक्ति है।

और आगे की साइड एक व्यक्ति ग्लव्स और हेलमेट --

स्टैचूस नजर आ रहे हैं इसमें काफी सारे लेडीज लोग के कपड़े भी हैं।

वाइट कलर का फर्श लगा हुआ भी है।

अभी समय रात हो रहा हैऔर काफी सारी लाइटें भी जल रही है।

सबसे आगे साइड में एक बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

काले कलर का बगुला नजर आ रहा है।

फोटो रोड पे ली गई है।

इंडियन ऑयल का पेट्रोलियम दिख रहा है।

जहाँ पर वाइट लाइन से रेसिंग ट्रैक बनाई गई है यहां पर काफी सारे व्यक्ति इस प्रतियोगिता की--

बैंक दिख रही है जिसके बाहर एक स्कूटी और--

इसके अंदर दो व्यक्ति और बाहर की साइड एक व्यक्ति बैग लेकर खड़ा है।

जहाँ पर कुछ मेल और कुछ फीमेल लोग योगा कर रहे हैं।

और उस महिला के गोद में एक छोटा बच्चा है।

इसमें काफी सारी कुर्सियाँ भी नजर आ रही है साथ ही एक हैंड पंप भी नजर आ रहा है।

मछलियों को खरीदने और देखने के लिए काफी भीड़ लग चुकी है एक व्यक्ति छूकर मछलियों को --

एडल्ट ह्यूमन भी है वुमन भी है।

जहाँ पर काफी सारे खाने-पीने की सामग्री नजर आ रही है।

इस के बीच में एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर फिक्स प्राइस लिखा हुआ है।

छत भी रखी हुई है और एक--